आप ये नजारा देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे यह क्या है? यह एसबीआई बैंक का नजारा है। आप इसमें देख सकते हैं सेंट्रल बैंक आफ इंडिया --

पर देख सकते हैं कि यहां पे पूजा की जा रही है।

लोग आपको कुछ लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे दरअसल् यह लोग अपने पैसे को लाइन में निकालने के लिए लगे हुए हैं --

बैंक हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उनकी सहायता से हम ऋण सुविधा और अपने पैसों की बचत सेविंग्स भी कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान होती हैं।

कोई मोबाइल कोई फोर व्हीलर से चल रहा है और यहाँ पर कई प्रकार की दुकानें भी हैं जहाँ से लोग अपने रोजमर्रा जीवन के लिए सामग्री खरीद कर उपयोग में लाते हैं।

जिम के जिम के तौर तरीके से खाकर उनकी बॉडी को उनके अनुकूल वजन उठाने हर तरह से स्वस्थ और फुर्तीला बनाने में सहायता करते हैं।

सभी भक्तगण अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन अर्चन और वंदन करते है आप यहा पर काफी श्रद्धालुओं को देख सकते --

मनचाहे डिजाइन के हेयरकट करा सकते है और अपने सेविंग्स भी बनवा सकते है।

आप अस्पताल में जाकर अपने स्वास्थ्य सुविधा ले सकते हैं आपको अगर किसी प्रकार की रोग या किसी भी प्रकार की आप रोग से ग्रसित हैं।

यह ही बहोत ही कुशल कारीगरो द्वारा बनाया गया है इस प्रकार के भवन दुर्लभ और बहुत ही प्राचीन कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित है।

इनसे हमें विटामिन ए भी प्राप्त होता है परंतु यह मछवारे सुबह से नदी में जाकर पहले मछलियां पकड़ते हैं। उसके बाद इन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीवका और अपने रोजगार को प्रोत्साहन देते हैं।

कोई यहाँं पर प्रकृति की काफी सुंदरता दिखाई दे रही होगी।

अपनी दवा को निशुल्क में प्राप्त करके अच्छे डॉक्टरो से परामर्श लेकर अपने स्वस्थ की देखभाल कर सकते हैं।